इस के जस्ट ब्लग मे रेड रोक फिटन्स जिम है जहा पे लोग आके जिम करते है।

यह तस्वीर एक मेले का है जहा पर मूर्ति कला का प्रदर्शन किया गया है।

और रोड के पास में बिजली वाला पुल हैं फिर बिजली का तार --

हो गया है इसमे फूल भी निकलते है कमाल का इस पत्ते का यूस लोग भोजन खाने में करते है।

यह फल का दुकान है इस फल के दुकान में नाशपाती अनार संतरा सेब केले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहोत अच्छे-अच्छे फल मिलते हैं ओ भी सस्ते दाम पे।

देख कर मुंह में पानी आ रहा है सब कोई छोले चाट खाना बहुत पसन्द करते हैं।